पिलर है और कलर किया हुआ हरा कलर किया हुआ है खिड़की आरू है और ये जाने वाला रास्ता है गेट बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।